और इसमें कुछ खिलौने भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक झूला भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें पानी की बोतल भी रखी हुई है और इसमें कु ये कुरकुरे वगैरा भी टंगे हुए हैं।

और उसमें कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे एक घर में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

स्कूल के पास एक स्कूटी भी खड़ी हुई है और स्कूल के अंदर पेड़ भी दिख रहे हैं।

और एक बैनर की लगा हुआ है और उसके पीछे एक दुकान भी है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है।

मुझे स्कूटी भी दिख रही है और नीचे की शटर भी दिख रहा है।

और आगे खाली ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है और उसके औरे धोरे पेड़ भी लगाए हुए हैं।

और यहां एक टेंपो भी है और उसमें से बच्चे और महिला उतर रहे हैं।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

और टाइल भी लगी हुई है और लाइटें भी लगी हुई--

और उसके पास एक पानी की बोतल भी धरी हुई है।

और चेरी भी खड़े हुए हैं और इसमें एक केले का पेड़ भी खड़ा हुआ है।

यह एक होटल दिखाई दे रहा है होटल में सोफे भी धरे हुए है।

में एक बोर्ड भी लगा हुआ है रेड कलर का कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है।